पर्क लखनऊ से वाराणसी और दिल्ली जाने के लिए बसे मिलती हैं।

आपको एक रोजक तथ्य बताऊ गोरखपुर का प्लेटफार्म संख्या एक विश्व की सबसे बड़ी --

यह जो आप चित्र देख पा रहे हैं वो मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय का --

मिलते हैं और सभी अफॉर्डेबल बेंच भी मिलते हैं। ये गोरखपुर के थ्री स्टार की रेटिंग का एक बहुत ही फेमस कैफै है।

दिखाई जा रहा ऐसे कोई का मतलब सुनकर न्यूज़फुल प्रोडक्ट वर्क । बच्चों के पढ़ाई के --

और जीवन भर एक दूसरे के साथ रहने का वादा करते --

ये जो आप चित्र देख रहे हैं वो सुपरमार्केट का है।

ये जो आप स्थान देख रहे हैं वो वीवर्स कौफी कैफे का है।

कई तरह के आई.टी.आई. कोर्सेस को पढ़ाया जाता है और वो सब एक अफॉर्डेबल रेंज में किया जाता। इसमें एन्ट्रेन्स ईग्जाम भी होता है।

ये कपड़े आमतौर पे महंगे रेंज के होते हैं।

द मेन मॉल जो गोरखपुर में स्थित है लेकिन अब वो बंद हो चुका है।

यह जो आप चित्र देख पा रहे है वो पॉउल ड्राई क्लीनर्स और ड्राइयर्स का है।

और पीस फिश के बहुत सारे से अच्छे दामों पर बेचते हैं।

लेकिन टूरिस्ट अट्रैक्शन की वजह से एक तरफ बीच में कन्वर्ट कर दिया गया है।